यह एक बड़े ग्राउंड की पिक्चर है यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर एक मटका रखा हुआ है।

यहाँ पर दो चेयर खाली दिख रहीं हैं।

यहां पर खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए हैं।

ये एक खेत की पिक्चर है यहां पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

बड़ी पोर्ट में खिड़कियां दिख रही है।

यहां पर एक थाली रखी हुई है।

यहां पर आसमान दिखाई दे रहा है।

ये एक रेल्वे स्टेशन की पिक्चर है यहां पर रेल्वे ट्रैक दिख रहे है।

यहां एक आदमी कुछ काम कर रहा है।

यहां एक आदमी खाना बना रहा है।

यह एक बड़े प्लॉट की पिक्चर है।

ये एक गाड़ी का शोरूम है यहां पर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यहां पर दो शॉप दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक झरना दिखाई दे रहा है।

यहां पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक सफेद दरवाजा दिख रहा है।

जिसमें सफेद रंग का कवर चढ़ा हुआ है।

यहां एक नीले रंग का डिब्बा रखा हुआ है।

टेबल के नीचे दो कार्टून रखे हुए हैं।

इसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इस पिक्चर में बहोत सी टेबल और चेयर रखी हुई हैं।